एक टावर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और हमे तार भी दो तीन ऊपर दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मै हमे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है और जाली लगी हुई दिख रही है दो हमे कुर्सी रखे हुआ भी दिखाई दे रही है जो क्रीम कलर की है और ऊपर हमे तार की फेन्सिंग दिखाई दे रही है।

और ब्लू कलर की मैट नीचे बिछी दिख रही है।

इस इमेज मे हमे एक सामने मंदिर दिखाई दे रहा है उसका छत हमे बना हुआ दिख रहा है।

एक टावर लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है और हमे तार भी दो तीन ऊपर दिखाई दे रहे है।

बहुत बड़ा ऊँचा पहाड़ टोरिया जैसा देखायी दे रहा है उस पर हमें बहुत सारे पेड़ लगे हुवे दिखाए दे रहे हैं।

ब्लैक ओर रेड कलर की है यहा हमे दरवाजे भी दिखाई दे रहे है और दिवारो पर पोस्टर भी लगे हुए है जिनके और एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और सामने बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है पहाड़ पर हमे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और यहा हमे घड़ी लगी हुई दिवार पर दिखाई दे रही है तीन चार पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है और ऊपर हमे लाइट भी दिखाई दे रही है।